पीछे की तरफ एक पेड़ भी लगा हुआ है।

बहोत सारे बच्‍चे गेम्‍स खेलने के लिए जाया करते हैं यहाँ पे एक व्‍यक्ति आपको स्टेडियम के बिल्‍कुल बीच में दिखाई दे रहा होगा और किनारे-किनारे --

इस इमेज में आपको एक छोटी-सी शाप दिखाई दे रही होगी जहाँ पर एक व्‍हाईट कलर की मेज के ऊपर एक बहोत ही सुन्‍दर केक रखा हुआ है जो पूरा व्‍हाईट कलर का है। --

कुछ व्‍यक्ति दिखाई दे रहे होंगे जो एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर खड़े हैं। --

उनके कपड़े पूरे रंगे हुए हैं पिंक कलर से ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी होली खेल कर आये हैं और ये सब फोटो खिचवाने के लिए इस पोज में खड़े हैं।

दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो लकड़ी के छत को बना रहे हैं।

ऊपर खुला आसमान है तीन तारें भी जा रही है और एक बड़ी सी दीवार भी दिखाई दे रही है।

जो बहुत ही सुन्‍दर दिखाई दे रहा है।

जो बहोत ही सुन्‍दर और ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है आपको जो बहुत ही सुन्‍दर है बहुत ही हरे-भरे ये प्लांट्स ज्‍यादातर लोग अपने घरो में शो पीस के लिए या के लिए यूज करते हैं।

जिसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा है जहाँ पर दुकानदार बैठा करता है या वहाँ से आया जाया करता है।

यहाँ पर लोग पेट्रोल भरने के लिए अपनी बाईके लेके जा रहे हैं और पेट्रोल पंप पर एक छोटा-सा टेम्‍पों भी है जो पेट्रोल भरवा रहा है।

इस अनुमान से आप यह अंदाजा लगा सकते है कि ये एक मदरसा है।

उसके किनारे-किनारे हरे-भरे घास-फूस और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।